और कुछ पहाड़ सा दिख रहा है और यहाँ पर कुछ पुल सा बना है पत्थरों का वेह दिख रहा है।

और वे लोहे की है और यहाँ पे एक अंकल जी बैठे हुए है जो वाइट कलर की शर्ट पहने हुये है यहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे--